पास जो घास वगैरा है वो भी मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं पीछे की ओर जो कुर्सी इन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से इन्होंने मतलब सजा रखी है देखने में--

पेड़ पौधे भी देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं।

यहां पर ये ढेर सारे लोग मछली वगैरह या सब्जी वगैरह की शॉप लग रही है।

चंडीगढ़ की ही लग रही है अपने चंडीगढ़ शहर की यहां पर सामने एक सामने मुझे एक खास तरह का पार्क दिखाई दे रहा है और मुझे सामने की ओर एक पोल भी दिखाई दे रहा है।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

अ पेट्रोल पंप यह घर की फ़ोटो लग रही है जहाँ पर ऊपर का जो मौसम मैं देख रहा हूँ की काफी बारिश वाला लग रहा है।

उसको भी उन्होंने काफी अच्छे सा ध्यान रखा हुआ है।

ऊपर की जो लाइटिंग है वो भी दिखने में काफी अच्छी लग रही हैं पीछे मुझे एक से दो तीन लगे टेबल दिख रहे हैं अंदर मुझे तीन से चार बैठे--

अ ल आदमी भी मुझे दिखाई दे रहा है पब्लिक बैठी हुई हैं।

इस फोटो में मुझे जैसे मैं साफ़ देख पारा हूं कि सामने की ओर एक--

सामने के जो ओने रोड है वह काफी अच्छी तरीके से संभाल रखा है और मुझे बीच में एक दो तीन बोतल भी दिखाई दे रही है।

काफी अच्छा लग रहा है और नीचे मुझे तीन से चार तरह के मुझे पेन भी दिखाई दे रहे हैं देखने में पिक्चर की जो क्लेरिटी है और काफी अच्छी है और काफी स्मूथ है।

गैराज का काम चल रहा है। देखने मे पिक्चर के ऊपर एक--

इस पिक्चर में मुझे दिखाई दे रहा है कि जहां सामने की ओर एक पेट्रोल पंप बनाया गया है जहां भारी मात्रा में ट्रक वगैरा गाड़ी वगैरा खड़ी है।

जहां पर आसपास वगैरा सारी साइकिलें वगैरह खड़ी हैं।

सामने की ओर जो गेट है काला रंग का वो खुला हुआ है।